यहाँ पे गिट्टी है यहाँ पे कुछ मकान बनने वाला है और दो -तीन टेक्टर गिट्टी यहाँ पे गिराया गया हैं ।

यहाँ सैलून है यहाँ पे एक सैलून वाले एक लड़के का सैलून बना रहा है और --

यहाँ पे मन स सरोहर --

दो तीन मोटरसाइकिल है यहाँ पे फ़िलहाल कोई नही दिख रहे है खाली-खाली लग रहा है।

और यहाँ एक महिला है और एक पुरुष है और एक बच्ची है ये लोग दर्शन दर्शन करने के लिए आए है और महिला जो फुटबॉल पकड़ी हुई है अपने हाथों से अपने बच्चे का और यह रात का समय का फ़ोटो लिया गया हैं ।